बहुत सारी बुक हैं जहाँ स्माइली ऑन तरीके के।

तरीके का एक कुछ लिखा हुआ यहां पे बहुत बड़ा सा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च हॉस्पिटल रिसर्च एंड रिफेरल लिखा है यहां पे ।

और उसके आगे एक टेबल रखा है जहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है जिसके फूल का कलर है पीले कलर और वहां पे स्कैनरस भी रखें हैं गूगल पे और --

जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ काम चल रहा है। जो सामान उठा के वहाँ पे लेते एक बड़ी सी ट्रक रखी हुई है उसके पास में।

बहुत बड़े-बड़े जंबो रखे हुए हैं जिसमें कुछ सामान डाला है एक आदमी नीचे बैठ के कुछ काम कर रहा है और हेलमेट पहना हुआ है पीले --

उनको अच्छे से जमा के रखा गया दस बारह दस बारह करके एक ग्रुप में डाल डाल के रखा गया एक आंटी बैठी जो साड़ी पहनी हुई है।

जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शोरूम दिख रहा है जहाँ पे उसके आगे बैलून्स लगे हुए हैं नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी ।

एक आदमी दिख रहा है जो जिसकी अच्छी सी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है ।

तीन टीवी लगी हुई है जो बहुत दूर दूर लगे हुए एक टेबल फैन लगा हुआ है और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही जो पोस्ट ऑफिस की।

एक ए_सी के कड़ कुलर लगे हुए हैं एक पुरानी सी बिल्डिंग है।

जैसे कि जैसे कि आप यहां पे देख रहे है की हरे कलर का बद बदला बिछा हुआ जहां पे बहोत सारे लड़--

तरंगे लगे हुए हैं जो मंदिर जैसा दिख रहा है हर --